और सोफे के जस्ट बगल में एक टेबल लगाया हुआ है।

वहां पर एक फाउंटेन है और अगल बगल में पेड़ पौधे हैं हरियाली का बहुत ध्यान रखा गया है।

और उसके बगल में गाड़ी सब लगी हुई है बिल्डिंग के नीचे।

बिल्डिंग का रंग सफेद और ब्लैक में है।

और उसके पीछे के बैनर में पूरे ब्लैक और रेड और वाइट कलर से बनाए गए हैं बहोत सारे मानचित्र।

और यहां पर एक अक्वेरियम भी रखा गया है।

और उसके ऊपर में ब्लैक कलर से ये पाइपिंग में लगाकर शीट की दुकान टाइप की बनाई गई है।

और उसके जस्ट बगल की दीवार पीले कलर से है।

और उस गेट के आगे पर्दे लगाए हुए हैं।

यहां पर कुछ लड़के और लड़कियां बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं।

और यहां पर खाने के लिए अनेक प्रकार की चीजें बना कर मिलती है।

यहां पर बहुत ही सारे आदमी और बच्चे खे अ है।

और उसके पीछे बहोत ही ज्यादा हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं।

और दीवाल पर एक एक का डाक फ्रीजर भी लगा हुआ है।

और उसके ऊपर हल्की सी उड़ान और रंग बिरंगी लाइटों से व्हाइट कलर की और नीचे रेड कलर की लाइन से कुछ बनाकर लिखी गई है।

और उसके ऊपर कुछ कुछ फूल पौधे फूल लटकाए हुए हैं।